बहार का सीन है यह इसे झोपड़ी इसे बहार में डूब रहा है उधर टॉवर है ऊपर आसमान है इधर जंगल है

ये घास है इसमें एक खंबा गड़ा हुआ है पेड़ सब दिख रहा है हरा-हरा घास भी दिख रहा है इसमें एक झोपड़ी है।

अ घड़ी भी टांगा हुआ है इसमें --

ये पुनोरा धाम है सीतामढ़ी का हमारे यहाँ सीतामढ़ी में पुनोरा धाम है दुर्गा पूजा का टाइम हैं ये मूर्ति से बनाया जाता हैं और लाइट भी बढता हैं भी लगाया हुवा हैं |